यह एक पार्क की पिक लग रही है।

यह एक हेयर सैलून की पिक लग रही है।

क्लास रूम में अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है--

यह एक नदी की तस्वीर लग रही हैं इसमें कई सारी बोट्स अवेलेबल है।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

यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन की है जो कि चंडी मंदिर के पास अवेलेबल है।

इसमें वाइट एंड ब्लू कलर की रेलिंग दिख रही है।

यहां पे येलो कलर की लाइटिंग भी हो रखी है।